बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं कलरफुल शायद कोई मेडिकल है जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं मेडिसन ।

इसमें हम देख रहे हैं कि हमें ऊपर की तरफ से आसमान नजर आ रहा है और कुछ खास भी दिखाई दे रही है छोटी-छोटी सी कोई कीचड़ दिखाई दे रहा है साइड में--

इसमे हम देख रहे है के यह पे शायद कोई जिम वगेरा है। अ म जहा पे वर्कआउट होता है म हम देख रहे है यह पे हमे कुछ मशीने भी दिखाई दे रही है। हमे लोहे की रेड कलर की कोई देख रहा है। विंडोज़ वगेरह खुली है। बाहर से रोशनी आ रही है।

ईमेज है इसमे हम देख रहे है की यहाँ पे दुकाने बनी हुई है बहुत सारे साइड से मैन रोड निकला हुआ है और एक हेड पम्प भी लगा है यहाँ पे।